यहाँ पर एक सब्जी का दुकान है इसमें बहुत सारा सब्जी है कोबी है।

यहां पर बिल्डिंग है बिल्डिंग का लगा हुआ है।